जब नदी का जल आगे की ओर जाता है तो उसे ज्वार कहते है जब पीछे की ओर जाता है तो उसे भांटा कहते है पेड़ पौधे है अच्छा दृश्य है।

बहोत ही अच्छी से खींची गई तस्वीर है।

इस तस्वीर में बहोत ही अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है बहुत ही अच्छी प्रकार की --

बहुत सारी अनेक अनेक रंग की अन्य करने कलर की बसे है पेड़ पौधे भी दिखाई दे रही है कुछ लड़कियां योग व्यायाम कर रही है।

मनुष्य को हमेशा जीवन में अच्छी सोच रखनी चाहिए।

हां पर एक ए_सी भी लगी हुई है चारों ने अलग अलग प्रकार के कपड़े पहन रखे हैं बहुत ही अच्छा घर है ए_सी लगी हुई है।

बहुत ही अच्छी प्रकार से खींची गई तस्वीर है देखने में भी आकर्षक है।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

यहां पर मुझे एक पुस्तकों की दुकान दिखाई दे रही है दीवार पर तस्वीरें लगी हुई है।

गणेश जी की मूर्ति दिखाई दे रही है यहां पर लाल रंग की चुनरी भी है यहां पर प्रसाद भी चढ़ा हुआ है माल भी है।

इस तस्वीर मे बहोत ही अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है खींचने वाले ने क्या तस्वीर खींची है और देखने वाले हैरान हो गये --

और एक सफेद रंग का बादल भी दिखाई दे रहा है जिसे कपासी मेघ कहते हैं बादल तीन प्रकार के होते हैं।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

बस अड्डा दिखाई दे रहा है और एक रेलवे प्लेटफार्म में दिखाई दे रहा है कुछ यात्रीगण खड़े हुए हैं आसपास में पेड़ पौधे भी है।